इसमें बच्चे रेक्सीन के ऊपर योगा कर रहे हैं। सब एक तरीके से योगा कर रहे हैं।

काउंटर के ऊपर रसगुल्ला वगैरा बिस्कुट के डिब्बे भी रखे हुए हैं।

एक खड़ा हुआ है दूसरा एक्सरसाइज कर रहा है और इसमें लाइटें जल रही है।

लेफ्ट साइड पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं कुछ दो गाड़ियां जा रही हैं।

कॉलेज के चारों तरफ बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसमें ये क्रीम कलर का ब्राउन कलर का पेंट किया गया है।

पिलर के पीछे एक आदमी दीवार पर बैठा हुआ है।

पेड़ों के आगे कच्ची जमीन दिखाई दे रही है।

ये फोटो किसी स्कूल का लग रहा है इसमें बच्चे खड़े हुए हैं।

ये किसी मॉल की फोटो है इसमें अलमीरा बनी हुई है उसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

खिड़की वगैरा लगी हुई हैं और एक जाली बनी है जिसके बाहर से अंदर रोशनी आ रही है।

ये फोटो कालिंग सेन्टर का लग रहा है।